इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं।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

पेड़ दिख रहे हैं आसमान में घटा छाई है।

इस चित्र में कुछ मजदूर दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक पहाड़ी दिख रही है चट्टान नजर आ रही है।

गाउन दिख रहे हैं।

इस चित्र में गाड़ी की सर्विस हो रही है।

परचूनी की दुकान है आटा दाल दिख रहा है।

इस चित्र में जिम दिख रहा है।

फव्वारा दिख रहा है।

जिसके बाहर एक गार्डन बना है।

गेंदे की माला नजर आ रही है।

जिसके पीछे जमीन है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में सब्जी मंडी दिख रही है डलियाओं में सब्जी रखी है एक आदमी खड़ा है।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

इस चित्र में हमें कुछ छज्जे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक पुराना महल दिख रहा है।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

इस चित्र में मस्जिद दिख रही है।

ठेले पर लहसन और प्याज रखा है।

इस चित्र में एक सलून दिख रहा है।

गाड़ियां दिखाई दे रही है लाल और काले रंग की--

आसमान में चांद दिख रहा है।

एक मजदूर ने लाल शर्ट पहनी है।

इस चित्र में जंगल दिख रहा है जमीन पर सूखे पत्ते पड़े है।

इस चित्र में ग्राउंड दिख रहा है।

एक आदमी ने काली शर्ट पहनी है।